काउंटर पे बहोत सारी बुक्स रखी हुई है।

एक सैनिटाइजर की बोतल रखी हुई है।

आगे एक मैदान में लाल बस भी खड़ी है।

पीछे कुछ घर हैं और पीछे कुछ पेड़ भी हैं।

ऊपर भी कपड़े है नीचे भी कपड़े हैं।

इस पिक्चर में मौसम बहुत ही सुहाना नजर आ रहा है।

नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है।

और सामने एक सीनरी लगी हुई है जिसमें दो लड़का लड़की एक दूसरे को देख रहे हैं।

एक रेड कलर की चेयर भी दिख रही है।

उसके आजू-बाजू दो कुर्सियां रखी हैं कुर्सियों पर कोई भी नहीं है।

लड़कियां बहुत खुश नजर आ रही हैं।

और दीवार के पीछे एक पेड़ है जो बहोत लम्बा है।

बहुत सारा मलवा पड़ा हुआ है।

वह ब्लैक टाइल्स वाले पत्थर के ऊपर भी कुछ रखा है।

इस फोटो में एक आदमी कार को सुधार रहा है।

कार की कंडीशन बहोत खराब है।

सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है।

इस पिक्चर में एक लड़का दो पेड़ों के बीच में खड़ा हुआ है।

और एक कार भी खड़ी हुई है।

पेट्रोल पंप में लोग बहोत सारे हैं।

उस पे रेड कलर का पोस्टर भी लगा हुआ है।

इस पिक्चर में एक जंगल दिखाई दे रहा है।

दुकान बहोत बड़ी नजर आ रही है।

खेत में ग्रीन ग्रास है बहुत से पेड़ हैं।

इस पिक्चर में कुछ कार्स नजर आ रही हैंऔर थोड़ा सा पानी भी है और कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

बहोत बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं मौसम बहोत अच्छा है।

कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर पर हैं कुछ लोग सेकंड फ्लोर हैं।